भैया हे और पीछे ती मंदिर हे और मंदिर में पूजा करत हे आस पास में बहोत आदमी हे पेड़ पौधा हे।

मछली है भैया है ऊपर में कपड़ा है फोनपे वाला स्कैनर टंगे हे बड़े बड़े मछली है बाल्टी है भैया बैठे हैं।

कुछ-कुछ बना रहे है गम है और कुछ राखी-वाखी बना रहे है बहोत अच्छे-अच्छे बच्चे बैठे है खिड़की है दरवाजा है।